और ऊपर की पट्टी पर लाल पीला नीला रंग पुता हुआ है।

नीचे की ओर फोन पे व्हाट्सएप गुगल पे पेटीएम और एच_डी_एफ_सी बैंक का लोगो बना हुआ है।

यह एक दोकान है यहां पर बहोत सारी शील्ड रखी हुई है जो विभिन्न आकृतियों की है।

यहां एक कांच की टेबल रखी हुई है जिस पर चार प्लेटें रखी हुई है।

इन पर स्टील की चम्मच रखी हुई है एक कटोरी भी रखी हुई है।

यहां सामने की ओर बहुत सारे सजावटी पेड़ लगे हुए हैं।

ये कार का ढक्कन भी खुला हुआ है और पेड़ भी लगे हुए हैं।

और यहां दो कुर्सियां भी रखी हुई हैं जो चेहरे कलर की हैं।

और दो बंदूक भी रखी हुई हैं जो काले और सिल्वर रंग की हैं जिसमें एक बंदूक चलाने का कुंदा बना हुआ है।

सामने की ओर नीला छप्पर बना हुआ है जिस पर एक बोर्ड टंगा हुआ है।

और दो चम्मच भी रखी हुई थी और एक ट्रे भी रखी हुई हैं जो काले रंग की हैं।

यहां पर बहुत सारे मक्का रखी हुए हैं जिनका छिलका लगा हुआ है जो हरे रंग का है।

यहां एक छप्पर बना हुआ है जिसमें बहुत सारे फूल रखे हुए हैं।